'' इसमें भी सात-आठ बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो एक पेपर कटिंग कर रहे हैं एक कैंची लेकर एक बच्चा कुछ हाथ से पकड़ कर कर रहा है दूसरा भी पेपर फोल्डिंग कर रहे हैं और भी काफी सारे बच्चे अपना कोई कोई काम कर रहे हैं मेम् सीखा रहे हैं वो कर रहे हैं ।''

-- का तस्वीर लग रहा है जो मंदिर काफी सुन्दर से सजाया गया है मंदिर गेट है वहां पर बहुत सुंदर तरीके से लाइटिंग लगा हुआ है काफी मात्रा में भीड़ दिखाई दे रहे है रोड पर चल रहे हैं।